और बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है जिसे कॉरीडोर से कनेट किया हुआ है।

ये एक किताब की दुकान है जिस के बाहर एक बैनर लगा हुआ है उस पे गोयल पुस्तक मंदिर लिखा हुआ है।

एक ही पेड़ से दो टेहेनीयां निकली हुई है।